इस तस्वीर में मुझको फूल दिखाई दे रहे है यल्लो कलर के कुछ वाइट कलर के बहोत सारे युवक दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे मुझे एक मेन रोड दिखाई दे रहा हैं उसका एक युवक स्कूटी से जा रहा हैं स्कूटी का कलर बैगनी हैं और एक ऑटो रिकसा भी चलता दिखाई दे रहा हैं।

माक्स लगाया हुआ हैंएक एसी दिखाई दे रहा हैं और दुकान के अंदर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं ।

लकड़ी की सीली दिखाई दे रही है दो टंकी दिखाई दे रही है और एक पाइप दिखाई दे रहा है।

--बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है और कुछ पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक पीछे की तरफ शॉप नजर आ रही है एक युवक जा रहा है जिसने टीशर्ट और लोवर पहना हुआ है एक युवक कार में कुछ काम कर रहा हैं ।

एक ब्रिज दिखाई दे रहा है एक युवक खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक टी-शर्ट और नीला जिन्स पहना हुआ है पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

और युवक ने नीली टीशर्ट पहनी हुई हैं ।

उसने हाथ घड़ी पहनी हुई है पीछे की तरफ फूलमाला लटकी हुई है सबसे पीछे एक लेडिस बैठी हुई है एक युवक आ रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर की टीशर्ट पहने हुए है और रेड बैग भी टाँगे हुए हैं ।

इस तस्वीर में युवक जमीन पर बैठा हुआ है वो अपने हाथ में मास्क लिए हुए है चश्मा लगाए हुए हैं।